और दोनों साइड परदे लगाए हुए है गुलाबी रंग के गोल्डन रंग के।

उसके नीचे तीन शटर है जोकि तीनों बंद है।

दुकान का कलर वाइट कलर है यह एक फर्नीचर शॉप है सामने यहां पे लकड़ी के फर्नीचर बनाकर रखे हुए हैं जिनमें से कुछ सोफा टेबल दीवान पलंग और चेयर है।

यहां सामने जो ग्रील है वह ब्राउन कलर की है जिसमे एक ताला लगा हुआ है।

कि खुली है अंदर की साइड में तीन रखे हुए हैं सिल्वर रंग के और एक छोटा सा काउंटर भी बना हुआ है।

बस का रंग व्हाइट कलर है और नीले रंग के हैं सभी बस यहां पे सभी शीशे खुले हुए हैं बस के एक आदमी भी चढ़ रहा है बस पे।

यहां पे एक फोटो है जहां पे सामने एक बड़ा सा टोयोटा का शोरूम है जिसमें सामने बहुत बड़ा बड़ा सा सीसा लगाया गया है ऊपर में लाल कलर से टोयोटा लिखा गया है।

वहां पे पीछे की साइड एक ग्रिल है जो की वाइट कलर का है।

यहां पे एक फोटो है जहां पे सामने एक ऑफिस रूम है।

अंदर की साइड अंडे के बहुत सारे ट्रे रखे हुए हैं।

जो सेल्फ हैं वो नीले रंग का है।

यहां पे बहुत सारी एल्यूमिनियम और मेटल्स की प्लेटें रखी हुई हैं और बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यहां पे एक फोटो है जहाँ पे सामने एक रूम है इसके अंदर बहुत सारी सिलाई मशीन रखी हुई है।

ब्लैक कलर की है यहां पे काउंटर चेयर टेबल भी रखा हुआ है।

जोकि ब्राउन कलर का है और यहां पे जो दीवाल है वो गुलाबी कलर का है।

यहां पे एक फोटो है जहां पे सामने एक कार लगी हुई है जो कि सामने से पूरी खुली हुई है उसके सारे पार्ट्स दिख रहे हैं।

यहां पे एक फोटो है जहां पे सामने एक दुकान है जिसके काउंटर पे बहोत सारे पैकेट्स में अलग अलग सामान रखे हुए हैं।

दीवाल है वो नीले रंग का है।

उसके नीचे जो दुकान है वो खुली हुई है सामने बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

रात का समय है आसमान काला है।

शिव लॉजिस्टिक टूर एंड ट्रैवल सॉल्यूशन लिखा हुआ है।

यहां पे एक ठो फोटो है यहां पे सामने एक बिल्डिंग के अंदर की पार्किंग बनाई हुई है यहां पे एक ब्लैक कलर की कार खड़ी है।